पीछे एक पानी का झरना है जो की ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और--

इसमें हरे परदे और पीले परदे भी लगे हुए हैं।

इसमें कुछ खिड़कियां और लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

एक बाइक कुर्सी साइकिल और गाड़ी खड़ी हुई है जिसके आ पीछे एक लोग बैठा हुआ है।

और यहां कुछ कुर्सी और स्टूल भी रखे हुए --

यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है।

वहां छोटी छोटी अलमारियां भी हैं।